सामने पर एक स्टेज बना हुआ है।

जहां पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग एवं कई दुकानें दिखाई दे रही हैं।

एवं साइड पर एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा ढका हुआ है।

यह किसी शादी घर का दृश्य है।

यहां पर कुछ प्रोग्राम चलता हुआ दिखाई दे रहा है तथा सामने पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई है।

एवम् यहां पर इस गायों को लकड़ी एवं छप्पर की मदद से एक छत बनाया हुआ है।

ता सामने पर दो बसें लगी हुई है जिनका रंग पीला एवं एक का सफेद है तथा आस पास कई बिल्डिंग है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग का दृश्य है।

यहां पर सामने एक टेबल लगा हुआ है जहां पर कई सारे लोग खड़े हैं।

एवं सामने पर एक बहोत लंबी रोड भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर ऊपर बोर्ड पर तेजा बुक स्टाल लिखा हुआ है।

एवं इस हॉस्पिटल में कई खिड़कियां भी हैं।

यहां कुछ झूले भी लगे हुए हैं झूला झूलने के लिए।

अथवा इन फूलों का रंग लाल एवं पीला है।

जहां पर लड़कियों की मदद से बने कई प्रकार के डेस्क है।

यहां पर दो बेड लगे हुए हैं जिसके ऊपर दो पेशेंट लेटे हुए हैं।

एवं सामने एक खिड़की है एवं एक दरवाजा है।

यहां पर कई सारे लोग छाता लेकर खड़े हैं।

तथा जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए चटाइयां बिछाई गई हैं।

यहां सामने पर एक बैंक भी है जिसका नाम केनरा बैंक है।

एवं सामने पर एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

एवं यहां पर बहुत बड़ी लंबी सीढ़ी भी है तथा यहां आस पास कई हरे भरे घास--

सामने की दीवाल पर छेदे वाली खिड़कियां भी हैं।

यहां पर लकड़ियों के एवं लोहे की मदद से बने कई सारे अलमीरा एवं डेस्क है जिसके--

यह किसी चाय की टपरी की दुकान है।

यहां पर कई सारे लोग बैठे हुए है।

यह किसी कमरे का दृश्य है।